पढ़ाई करने का जगह है यहां पे सभी लोग पढ़ाई कर रहा हैं ये एक लाइब्रेरी है।

यह एक बस डिपो है जहां से हम लोग बस पकड़ते हैं।

बहोत तरह का फूड यहां पे मिलता है यही यहां यह-य इस दृश्य में दिखाई दे रहा है।

ये एक बगीचा का दृश्य है।